ये बहोत बढ़िया व्यू दिख रहा है।

आप को ये दिख रहा होगा बोर्ड इसका नाम महर्षि विद्या मंदिर है ये बहुत बढ़िया स्कूल है।

ये पेट्रोल पे जैसे ये तेल पेट्रोल बहुत महंगा है वो आ आज आज कल यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई थी इसलिए ये तेल ट्रांसफर का हो रहा था इंडिया में।

आप यहाँ देख ही सकते हो आप यहाँ सैलून में देख ही सकते हो कि एक बंदा जो अपनी दाढ़ी शेविंग करने आ रखा है और अपने हेयर कट कराने आ रखा है।

जिसके बाहर पे एक गेट बना हुआ है यहाँ से एक गाय जा रही है बहोत बढ़िया रास्ता है सीधा जाने का।

का रोजगार चलता है अपना घर चलता है।

एक प्लेटफॉर्म ट्रेन का है ऊपर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बादल हैं कितना बढ़िया आसमान है।

यहाँ देख सकते हो बड़िया होटल है यहाँ आपको कुछ भी मिल सकता है यहाँ देख सकते हैं मोमो कि --

ये धर्म से है इनके मंदिर से है यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी बना रखे हैं।